रखे हुए हैं लाइट जल रही है।

और उसमें कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं पहिया धरे हुए हैं।

अस्पताल में डॉक्टर बैठे हुए है।

ई सफ़ेद रंग का पाई दिखाई पड़ा रहा है।

बहुत सारीयाँ कुर्सी पड़ी हैं खम्भे लगे हुए हैं।

बहुत अच्छा रूम दिखाई दे रहा है।

टहल रहे हैं चिड़ियाँ बोल रही हैं।

उसपे भागवत हो रही है बहुत सारे लोग सुन रहे है।

गुब्बारे बिछे हुए हैं तार लगे हुए हैं लाइटर जल लही हैं।

यह एक दुकान है दुकान देखने में बहुत सुन्दर लग रही है।

देखने में अति सुंदर पुल है।

लगी हुई हैं लाइटें जल रही हैं गुब्बारे लगे हुए हैं।

बहुत हरी-हरी घांस लगी हुई है पेड़ --